बगल साइड में एक आदमी का फोटो चिपका --

रोड के बगल में एक लाल कलर का चार चक्का गाड़ी लगा हुआ है| यह एक मस्जिद टाइप का लग रहा है।

एक भयानक बहुत घनघोर पहाड़ है| पहाड़ के नीचे कई सारा ईटा जैसा बिल्डिंग टाइप का लगा हुआ है।

यह एक रेलवे स्टेशन है| रेलवे स्टेशन के बाहर सारा पीला और ब्लू कलर का टेंपो ओमपुल सब लगा हुआ है ।

यह एक भयानक सा ब्रिज है| ब्रिज के राइट साइड में बहुत सारा टॉवर है| टॉवर्स के लेफ़ लेफ्ट राइट में यहा पर बहुत सारा तरवार है| तार के राइट साइड में जंग जंगल मे गाछी उछी--

यह एक समुद्र है समुद्र में दो आदमी नाव स ह घूम रहा है एक आदमी है नाव का ड्राइवर है।

अ देख सकते है एक आदमी पीले टीशर्ट और ब्लेक पेन्ट पहन कर घूम रहा है एक आदमी वाइट शर्ट है।

एक रोड है रोड के पीछे बहुत सारे आदमी हैं। आदमी के बगल में एगो सुजु-सुजुकी का चार चक्का लगा हुआ है उसके राइट साइड मे एगो टेमपुल है

यहाँ एक फूल का गोदाम है| फूल इस मे देख सकते हो के पीला हरा लाल ब्लू उजल बहुत सारा फूल सब रखा गया है| फूल के पीछे लाल कलर का जीना है जीना पर दो आदमी बैठ के कुछ गप सप कर रहा है।